हॉल के अंदर कई सारे डिजाइन किए गए औरी साल मे कई सारी वस्तुए को रखा गया --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

आज इसमें एक शिक्षक बच्चे को समझाते हुए दिखाई दे रही है जिसमें सभी बच्चे अपने हाथ में कलर लिए हुए ड्रॉइंग कर रहे हैं और कुछ बच्चे --

सभी कपड़े को साफ सुथरा और अलग-अलग प्रकार की डिज़ाइन से सजाया गया है।

उसमे एक पुरानी मारुति भी दिखाई दे रही है। यह उस सड़क के उस साइड एक सफेद रंग की बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

नदी से कुछ ही दूरी पे कुछ हरी-भरी झड़िया और कुछ मिट्टी के बड़े ही आकार दिखाई दे रहे हैं। नदी के अंदर कई सारी --

घर दिखाई दे रहा है यह घर बहोत ही बड़ा दिखाई दे रहा है और यह घर का रंग सफेद है।

इस छात्रवास का नाम डॉ भीमराव अंबेडकर राजकीय छात्रवास अमरोहा है।